और उपर की तरफ बहोत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं और इसमें सामने की तरफ कुछ बैंड रखे हुए हैं।

इसमें बहोत सारी महिलायें पूजा करती हुइ दिखाइ दे रही हैं। इन महिलाओं के बिच में मिट्टी के बड़ी-बड़ी सी --

और इसमें हमे सामने की तरफ बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस प्लेन में एक पनीर का टुकड़ा एक कबाब और एक निबू और कुछ प्याज के टुकड़े दिखा दे रहे --

जैसा कि हम इस तस्वीर में देख रहे है इसमें हमें एक बोहोत बड़ा एक मिरर दिखाई दे रहा है।

इस गार्डन में बीचो बीच एक बहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। गार्डन में आसपास बहोत सारे छोटे-छोटे से पेड़ लगे हुए हैं।

जैसा कि हम इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसमें हमे एक मोगा पंजाबी टंगका एक होटल दिखाई दे रहा है।

और सामने की तरफ दो आदमी जाते हुये दिखाई दे रहे हैं और पीछे की तरफ कुछ पेड़ दिखाई दे रहें --

और सामने की तरफ कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और बीचो बीच एक रास्ता दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे --